गेट और ग्रिल लगा है कुछ लड़के खड़े होके लडकियों को देख रहे हैं।

एक कॉफ़ी शॉप है जिसमे लिखा है डीएसपी सोडा एंड काफी शॉप --

मैडम सब देख रही है मैडम नीले रंग की साड़ी पहनी है और काले रंग का मास्क लगाए हुए हैं ।

अ एक अ लड़का खड़ा है काला कुर्ता पहन के काजल लगा के पीले रंग का दुपट्टा लगा के--

शायद ये कार साफ़ -सफाई के लिए है वही पास में एक टॉयलेट के लिए एरो बना है वहाँ पास एक टॉयलेट भी हैं ।

ऊपर जो बे अ ऊपर जो फ्लोर बना है वो भी ब्राउन कलर के है वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं।

चाय -चाय की पत्तियाँ उगी है दो तीन पेड़ है यह पूरा द्रश्य बहुत सुन्दर है हरा-भरा है छोटा सा घर बना हुआ हैं ।

यहाँ कौन क्या पढ़ाता है मुझे तो नही पता कोई आईडिया भी नही--

बहुत सारे फ़ूल्स है गेंदा है गुलाब है लिली है है रोजेज हैं ।